बना हुआ है चार कॉलम है और ऊपर में--

बहुत ज़्यादा अनार दिखाई दे रहा है।

होटल ग्रैंड बसंत लिखाया हुआ है।

आर्टिमिष्या अराऊंड ऐसे टाइप का नाम लिखा हुआ है सभी जगह पीला रंग में--

और साथ में कही पोस्टर दिखाई दे रहा है।

नदी का पानी हरा दिखाई दे रहा है क्योकि पेड़ का --